एक चोपाल बना हुआ है जिसके सामने एक भोला बाबा का मन्दिर है जो कि गेट बंद है।

एक गेट है एक तरफ से मोटर साइकिल वाला हेलमेट लगा के आ रहा है।

यह एक पार्क है जिसके सामने तीन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी कुछ काम कर रहा है | एक आदमी वाइट और हाफ पैंट में है जो कि कुछ बता रहा है शायद ट्रेनर है ---

यह एक पार्क है जिसके किनारे बड़ा-बड़ा बिल्डिंग सब दिख रहा है| ये --

यह गौतम बुद्ध का मंदिर है और ऊपर में भी डिजाइन बहोत अच्छा सा बना हुआ है भगवान महेश --

एक लड़का ह पैंट पहन के उस पे कुछ आगे गया हुआ है। उससे भी आगे है जिसे शायद कुछ डायरेक्शन दे रहा है और पीछे से एक आदमी और जा रहा है।